किसी के पीछे या फिर नहर के पास का नजारा जहां बहुत सारी बोट रखी है कुछ आदमी भी खड़े है बगल से रोड तो है।

हा ये रेस्टोरेंट है ओ खाली पड़ा है जिसमे टेबल एक साइड रखी है टेबल्स बड़ी टेबल्स है।